आम्म उन के हाथों में हथोड़ा है उन्होंने गुलाबी कलर की और ऑरेंज कलर की अ सर सदरी पहनी हुई है पैंट उनकी काली --

वो भी क्रीम कलर से पेंट की गई है और एक फॅन लगा हुआ है पंखा।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर ये इमारत है और यहां पर छोटे छोटे स्तंभ लगे हुए हैं यहां से अआ--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह मिस्त्री लोग यहां पर ये काम कर रहे हैं जहां पर इनके पास मोरन और गिट्टियां पड़ी हुई है।

यहाँ छोटा सा एक गेट लगा हुआ है।

जो कि इसके गेट जो है वो क्रीम कलर के है।

क्रीम कलर से पेंट किया गया है बगल में अक्षरा ब्यूटी पार्लर है और यहां पर एक खंभा लगा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक पहाड़ी इलाका है और यहा पर बहुत स अअ ब्राउन भूरे कलर और ग्रीन कलर के पहाड़ है।

ऊपर इसकी टीन डली हुई है भूरे कलर का इसका शटर है और यहां पर ये --

और यहा पर बहुत सारे पेड़ पौधे है जो कि हरे और काले कलर के है आसमान सफेद और नीला है।